दांत का इलाज हो रहा है और यहां पे मशीन भी लगाया गया है फूल भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहा है।

और यहां पे ट्रेन का लाइन बनाया गया है।

बहुत सारे कपड़ा भी दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है।

ब्लू कलर का है गुलाबी कलर का है लाल कलर का है और हरा कलर का है।

यहां पे बहुत सारे कुर्सी भी दिख रहा है बहुत सारे डी_जे भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे हरा भरा पौधा भी दिख रहा है।

स्कैनर छपा गया है और बहुत सारे अलमारी भी दिख रहा है।

बहुत सारे सीढ़ी दिख रहा है बहुत सारे कुर्सी भी दिख रहा है।

बहुत सारे टेबल भी दिख रहा है और बहुत सारे दरवाजा भी दिख रहा है।

बहुत सारे खाने का सामान रखा गया है।

बहोत सारे बोतल भी रखा गया है बहोत सारे डिब्बा भी रखा गया है।

कैमरा भी छापा गया है आधार कार्ड भी छापा गया है।

वोटर लिस्ट भी छापा गया है और पैन कार्ड भी छापा गया है।

बस बहुत सारे का आदमी के हाथ में मोबाइल है।

यहां पे बहुत सारे कैमरा भी दिख रहा है बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ दिख रहा है बहुत सारे लाइट भी दिख रहा है।

बहुत सारे लाइट भी दिख रहे है और बहुत सारे--

कुर्सी भी दिख रहा है और नीचे टाइल्स बिछाया गया है।

यहां पे बहुत सारे स्कूटी दिख रहा है।